इस्कूल है जो इस्कूल मे एक मैदान है मैदान मे हरी घास जमी हुई है।

स्कूल में कुछ रंगोली का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें ए लडकियाँ गेट के बाहर ए रंग-रंगोली बना रही है ।

और अगल-बगल खिड़कियां खुली हुई है।

स्कूल के अंदर कुछ मैदान हैं। जो मैदान में कुछ लड़के लोग बैठे हुए हैं और इस्कू अ ओ उनके अगल बगल कुछ गुलदस्ते भी रखे हुए हैं।

और कुछ मैदान भी है जो हरे-भरे घास जमे हुए है।

अगल बगल पेड़ पौधे है अ और बहुत सारे औरते आदमी खड़े हुए है ।

दुकान है । दुकान के अंदर एक कुछ संगमरमर के मंदिरे रखी हुई है।

ए क्रिस्चियन के कपड़े पहने हुए खड़े हुए हैं और रु बा और बैलून हैं। एक आदमी स्पीच दे रहा है।